बहुत बड़ा घर है जोकि पत्थर से ही बनाया गया--

उसके ऊपर में बहुत कोलगेट कुरकुरे और बहुत सारा सामान रखा--

के नीचे बहुत सारा बच्चा का खेलने कूदने का सामान रखा गया--

और ईयर बड्स भी रखा--

जिसमें बहुत सारा मोआइल रखे हैं और बहुत हेडफोन मोआइल और टेप भी रखें --

जो कि रंग बिरंगा का रखा हुआ है दीवाल पर।

सामने एक बहुत रेड कलर का गमला है जिसमें बहुत बड़ा फूल पड़ा है।

और सामने एक लाल कलर का चेयर हैं।

यह बहुत बड़ा बकरी का दुकान है अम बकरी है।

यह बहुत बड़ा घर है जिसमें एक रेड कलर का बॉन्ड लगा हुआ है।

सामने के अह ग्रिल का रूम है जो कि उसमें व्हाइट कलर का पर्दा लगा--

साइड मे एक हारा कलर का मनी प्लांट लगा गया हैजो कि गमला भी हारा उस पर मे रेड --

यह बहुत बड़ा ब्रिज है जिसमें बहुत सारा सीढ़ी लगे है।

सामने दो बाइक है जो की शिशा दिख रहा है।

सर अ नीचे में ग्रीन कलर का घास लगा हुआ है और बहुत बड़ा फील्ड है।

ऊपर में एक छाता है और बहुत आदमीस खड़ा है और सामने एक पोस्टर लगा हुआ --

दीवार में बहुत सारा चित्र बना हुआ है और सामने टाइल्स बैठा--

और बिच में बहुत गहरा पानी है और पानी बहुत अच्छा नजर आ रहा--